जिसके साइड्स में खिलौने के दुकान--

पार्क में रखे हुए हैं और यहां पर सा--

और यहां पर लाल रंग का--